ये एकठो कपड़ा के दुकान का फोटो है।

गुफा के बाहर एक आदमी खड़ा है । जोकि जीन्स जूता जेकेट और दस्ताना पहने हुए है ।

इसमें बहुत सारा बड़ा-बड़ा गमला रखा है बहुत सारा अलग-अलग कलर और अलग-अलग डिज़ाइन का कप रखा है।

का पूजा छठ में किया जाता है । इस का रंग का पीला और लाल है ।